काले कलर के हैं।

यहां पे कुछ लोहे के डंडे दिख रहे हैं।

दो नीले कलर का दिख रहे हैं।

यहां एक पेड़ दिख रहा है।

आदमी ने चश्मा पहना हुआ है।

इसके हाथ में कुछ रिबन लगे हुए दिख रहे हैं।

और एक ऊपर कुछ प्लास्टिक लगे हुए दिख रहे हैं।

पिकअप के ऊपर तीन आदमी दिख रहे हैं।

ऊपर में एक लाइट जल रहा है।

उसके बगल में काले रंग का सीढ़ी और दिख रहा है।

यहां पे दो चटाई बिछाए हुए है।

बगल में एक कमल का फूल दिख रहा है जो पिंक कलर का है।

यहां एक लाइट नहीं जल रहा है।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

एक लोहे का पोल दिख रहा है।

तों कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

मैदान के ऊपर कुछ बैग रखे हुए दिख रहे हैं।

नीचे में कुछ कपड़े लगे हुए दिख रहे हैं।

कुछ तार दिख रहा है।

यहां पे कुछ सिलेंडर रखे हुए हैं।

यहां पे दुकान के बाहर बहोत सारे रंग बिरंगे फ्लावर लगे हुए है।

यहां पे एक स्कूल का दृश्य दिख रहा है।

जो ब्लू कलर का है।

कार के ऊपर बहोत सारे फ्लावर दिख रहे हैं।

कुछ कांच के शीशे दिख रहे हैं।

यहां कुछ केले के पेड़ दिख रहा है।

डब्बे के ऊपर कुछ गन के चित्र बने हुए है |

यह डब्बे यह पिंक कलर --

उसके बगल में कुछ बुक्स रखे हुए हैं।

के अंदर एक कपड़ा दिख रहा है जो पीले रंग का है।

जो पिंक कलर का है।

यहाँ पे दो गाड़ी दिख रहा है जो ब्लैक कलर का है।

और उसके हाथ में घड़ी है।

एक स्कूटी और बाइक दिख रहा है।

फैक्ट्री के अंदर कुछ लोहे के पोल दिख रहे हैं।

पर गढ़वा लिखा हुआ है।

पीछे में धूप की रोशनी पड़ रही है।

ऊपर में कुछ लाइटें जल रहे हैं।

और कुछ तार दिख रहा है बगल में एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर चार्जर खोसा हुआ है।

और कुछ लड़की का दृश्य दिख रहा है।

दीवार कुछ टूटे हुए दिख रहे हैं।

इसके अंदर एक बोर्ड दिख रहा है।

नीचे एक बोरा दिख रहा है जो वाइट कलर का है।

यहां एक दरवाजा दिख रहा है।

यहां पे एक छोटा सा घर दिख रहा है।

यहां पे दीवार पे बहुत सारे खिड़की दिख रहे।